और आसपास कुछ पौधे है पीछे घर के पीछे बहुत सुंदर दिख रहा है घर भी और कुछ गेट वगैरह छोटा सा गेट दिखाई दे रहा है।

घर में बहुत सुंदर कार वगैरह खड़ी दिखाई दे रही हैं।

कुछ लड़की लड़कियां क्लास में दिखाई दे रहे हैं कंप्यूटर क्लासेस चालू दिखाई दे रही हैं।

और चारों ओर भी पौधे ही पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ बालून वगैरह फूल से डेकोरेशन दिखाई दे रहा है काच के अंदर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक लड़का कुछ कॉफी में लिखते हुए दिखाई दे रहा है कुछ चेहरे वगैरह दिखाई दे रही है फेन लाइट चालू दिखाई दे रही है।

चारों तरफ से यहां कुछ ना हो में बैठ के जैसे --

दिखाई दे रहा है बहुत सारे पेशेंट वगैरह भी आए हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ पर्ची पे डॉक्टर लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोग भी दिख रहे हैं। पर्ची लिख --

और लोग भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा ग्राउंड भी बहुत बड़ा दिखाई दे रहा चारों तरफ --

स्तंभ वगैरे बने हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ बहुत सारा लाइट वगैरह लगे हुए दिखाई दे --

कुछ चक्के जैसे कुछ दिखाई दे रहा है जिसमें आदमी दिखाई दे रहे हैं कुछ येलो कलर का और पानी जैसे कुछ पाइप जैसे दिखाई दे रहा है।

यहां कुछ बीट वगैरह दिखाई दे रहे हैं और यहां कुछ ग्राउंड बना हुआ दिखाई दे रहा है कुछ पौधे वगैरह दिखाई दे रहे हैं आसपास और बहुत सारे लोग --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

यहाँ कुछ रेत वगेरा गिरी नीचे दिखाई दे रही है इधर उधर गार्डन बहुत सारी दिखाई दे रही है कुछ बादल के अ दिखाई दे रहे है और यहाँ --

और कुछ लाइट वगैरह और बहुत स्टाइल्स वगैरह लगे हुए दिखाई दे रहे हैं रोटी हुई कुछ आलू दिखाई दे रहा है।

बहुत सारी विंडो वगैरह गेट वगैरह दिखाई दे रहे हैं और यहां गेंद के फूल भी दिखाई दे रहे हैं जो कि येलो कलर का बहुत सुंदर दिख रहे हैं।

और यहां कारें वगैरह दिखाई दे रही है बहुत बड़ा गेट दिखाई दे रहा है ग्राउंड भी बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे फूल वगैरह दिखाई दे रहे हैं कुछ फूलों की लड़ियां दिखाई दे रही है वाइट कलर की पिंक कलर की --

बहुत सुंदर फूल दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोग कुछ नीचे गिरे हुए भी फूल दिखाई दे रहे हैं।

कार भी बहुत सारी दी कार भी दिखाई दे रही ट्रक और बहुत सारे पौधे भी दिखाई दे रहे है --

और कुछ बाल वगैरह कटिंग करना जानू दिखाई दे रहा है काच के अंदर से सारी चीजें दिखाई दे रही है।